और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खजूर के जैसे पेड़ लगे हुए हैं जो की बहुत बड़े और बहुत अच्छे लग रहे हैं।

यहां मछलियां रखे हुए हैं यहां छोटी बड़ी सभी तरह की मछलियां रखी हुई है।

यहां पर एक रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ है और यहां पे सन की बहुत तेज रोशनी आ रही है और यहां पर सामने एक व्हाइट कलर की लाइन खींची हुई है ग्राउंड में।

ये एक फिश मार्केट है यहाँ पे तरह-तरह के ट्रे रखे हुए हैं जिसके अंदर अलग-अलग तरह की मशीन रखी हुई है उसके अंदर ट्रे का कलर ब्लू कलर का है और एक ट्रे का कलर येलो कलर का है।

यह एक दुकान है जहां पर तरह-तरह का सामान रखा हुआ है एक का काथा रखा हुआ है एक टेबल रखी हुई है उसके ऊपर एक रजिस्टर रखा है जो की पिंक कलर का है।

और सामने दरवाज़े बने हुए है जिसके अंदर सामान रखा हुआ है। खाने का पीने का तेल ओइल--

बड़े-बड़े बाउल जिसके अंदर छोटी-छोटी मछलियाँ रखी हुई है और बड़ा वाला बाउल जो रेड कलर का है और यहाँ पे एक भइया जो की पिंक कलर की टी-शर्ट पेहने हुए हैं और मछली बेच रहे हैं।

ये एक फ्लावर रखा हुआ है सामने और बहुत सारे फ्लावर भी है जो कि साइड मे लगे हुए है और साइड मे तरह-तरह के पौधे भी लगे है और एक --

और यहां की पर पेड़ जो है साइड में पड़ा हुआ है उसकी जो है डगाल लग लटकी हुई है और ग्रीन कलर के पत्ते लटक रहे है।